यहां पर कुछ लड़कियां नजर आ रही हैं लड़कियां एक्सरसाइज कर रही हैं।

एक जामुनी कलर का पर्दा नजर आ रहा है कुछ कुर्सियां नजर आ रही है जो हरे लाल रंग की है।

यहां पर कुछ फूल्स नजर आ रहे हैं।